जो की लोहे का है उसके बहोत बड़े बड़े पाइपे हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा समुंदर है।

और वहां पर लेंटर डाला जा रहा है।

मशीनों का कलर ग्रीन और मेहरून है।

यह एक दुकान हैं इस दुकान के बाहर एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा है।

बॉक्सेस के अंदर उन्होंने शीशे का शीशे लगे हुए हैं।

यही एक दुकान है और ये है बहोत ही बड़ी है।

और वहां पर कुछ वाइन की बोतलें पड़ी हैं और बस।

यह एक बहुत ही बड़ी पहाड़ियां हैं।

उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं।

और यहां पर एक चेयर्स पड़ी है उनकी--

और वहां पर वुड का वर्क किया हुआ है।